मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मै वहा एक डस्टबिन रखा दिखाई दे रहा है किनारे से कुछ खुरसिया लगी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे एक दिखाई दे रहा है गार्डेन मे मुझे एक लाइन दिखाई दे रही है जिसमे--

मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे मुझे एक अमरूत का पेड़ दिखाई दे रहा है शाखाये दिखाई दे रही है सामने एक घर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा।

मुझे हॉस्पिटल का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपर ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है उसके हाथ दिखाई दे रहे है हॉस्पिटल अँड रिसर्च इंस्टि--

दिखाई दे रहा है सामने सिडिया दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है गेट कांच का दिखाई दे रहा है सामने एक लड़का जाता दिखाई--

मुझे एक बेकरि दिखाई दे रही है बेकरी मे ऊपर सरोज बेकरी का बोर्ड लिखा दिखाई दे रहा है ऊपर द मल्टी ब्रांड स्टोर नाइनटीन फिप्टी टू लिखा दिखाई दे रहा है निचे द मल्टी ब्रांड स्टोर लिखा दिखा--